यहाँ पर ढेर सारे बुक का सेक्सन डिवाइड किया गया है एक तरफ व्याकरण की बुक है एक तरफ लिटरेचर की बुक है।

और यहाँ पे ढ़ेर सारा बारिश का पानी ज जमका जमाव है।

कुछ शेल्वेस खाली है लाइब्रेरी के लाइब्रेरी में कुछ कम पुस्तक दिखाई दे रहे हैं कुछ लगता है विद्यार्थी ले गए हैं।